द्वार में हरे रंग का बॉडर बनाया गया है यहां काफी साफ सफाई है।

यहां एक बहुत बड़ा जनरेटर दिखाई दे रहा है जिसमें महिंद्रा लिखा हुआ है।

कुछ लोहे भी यहां गड़े हुए हैं।

बाहर में एक डस्टबिन भी रखा हुआ है।

एक में बंधन बैंक और कोटक बैंक भी लिखा हुआ है।

यहां एक बिल्डिंग बनता हुआ दिख रहा है।

यह एक गार्डेन का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां से एक रास्ता भी निकला हुआ है जिसपर कुछ लोग भी चल रहे हैं।

यहां बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं एक में पैंथर देश का सर्वोत्तम सरिया लिखा हुआ है।

यहां एक टी_वी भी लगा हुआ है यह काफी साफ सुथरा है।

यह एक दुकान का दृश्य दिखाई दे रहा हैं।

बहुत सारे कार्टून भी दिख रहे है।

यहां एक बहुत बड़ा मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है उसमें कांच भी लगाए गए हैं।

नीचे टाइल्स भी लगा हुआ है।

छत पर बहुत सारी सोलर की पैनल लगाई गई है।

बगल में बहुत सारे कूट है और कुछ पेपर भी नीचे फ़ढ़ कर गिरे हुए हैं।

यहां काफी गंदगी नजर आ रही है।

यहां पर घुमावदार कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

हमने एक पोस्टर में धम्म सम्मेलन लिखा हुआ है।

यहां बहुत सारी बच्चियाँ नीचे बैठी हुई है एक लाल रंग का कुर्सी भी है।